दूसरा दुकान है फैंस की स्टैंडिंग फैंस है वहाँ पर मौजूद जो कि बेच रहा है।

और कुछ लड़के पानी में भी है नहा रहे है।

एवर ग्रीन लगे हुए हैं और वहाँ पर टॉवर भी लगा है जिसकी वायर्स भी कनेक्टेड है।

ये एक गिटार अ शोरूम है जहाँ पर गिटार्स है जहाँ पर पियानो है जहाँ पर कैसियो है।

जहाँ पर बहुत सारे आइटम्स आपको मिलेंगे जो कि बजाने के है जहाँ पर एमपे है यु यूनो है बहुत सारी चीजें वहाँ पर आपको मिल जाएगी ऐसे--

ब्लू बबल्स है ग्रीन बैलूंस है एंड पिंक बैलूंस भी है।

ये स्टेज पे दूल्हा है जिसको क्रीम एंड रेड कलर मरून कलर का--

शेरवानी पहना है और इसने दस्तार लगाया है।

बैलूंस लगे हैं ब्लैक बालूंस लगे हैं बहुत खूबसूरत--

बैठे वहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा है।

नर्सरी टू क्लास फिफ्थ साइंस वगैरह इनके पास होता है।

इसमें बहुत सारे कलर्स है जैसे कलर्स के फ्लावर्स है रेड येलो --

ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग आते जाते हैं।

और अ हिप वेस्टस के लिए भी है एंड एब्स के लिए भी वहाँ पर मशीन है।

वहाँ पर ये चर्च है एक्चुअली ये चर्च में ये सब बोल रही है ये येलो ये येलो कलर के वहाँ पर एक गॉड है।

वहाँ पर रेड कलर की चेयर है जो ये मैम बता रहे।

इसकी इनोगरेशन हो गई है इसमें ब्लू और वाइट कलर के बैलूनस है इसमें मालाई लगी हुई है दुकान पे--

चेयर्स है इसका नाम है बेटी डो द स्वाई।